वॉल को पूरे ग्रे कलर किया गया है।

ऊपर खुला और नीला आसमान है।

बहोत सारे फूल के पौधे लगाए हैं।

यहां पे एक रोड है रोड में बहुत सारे गाड़ी चल रहा है।

तीन टोकरी लाइन से रखा हुआ है।

ऊपर एक भगवान की फोटो और घड़ी लगाया गया है।

देख सकते हैं एक बड़ा नदी है।

हम देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ है।

नीचे एक जिओ फोन का पोस्टर है लाल रंग का।

वॉल में एक स्विच बोर्ड का दिख रहा है।

और इस तस्वीर में दो वाइट कपड़े दिख रहे है।

ये एक सैंडल का स्टोर है।

दुकान में एक साड़ी लंबा करके बिछाया हुआ है।

यहां बहुत सारा रंग के कपड़ा दिख रहा है।

दुकान में तीन लोग हैं एक लड़की मोबाइल में बात करती दिख रही है।

आंटी के बगल में वेट मशीन है जिससे मछली नाप सकते है।

कई सारे पानी के बोतल भी दिख रहे हैं।